यहाँ पे कीचड़ और दल-दल से बना हुआ एक नदी दिख रहा है।

एक यंत्र मछली जैसा दिख रहा है और एक यंत्र मगरमच्छ जैसा।

ढांचे के अंदर एक सफ़ेद गुम्बद टाइप का मंदिर हैं।

दीवारें ईट और पत्थर से बने हुए है।

एक लाह ल हरिदार शर्ट पहने आदमी जिसने सफ़ेद कलर का प्लास्टर लगाया हुवा है वह खड़ा है।